ये एक भगवान का मंदिर है मंदिर मे अ एक मूर्ति रखी है मूर्ति मे--

यू_पी साइड के लोगों का कुछ त्यौहार लग रहा है।